जो रंग-बिरंगे कलर के है ।

इस चित्र में हमे काफ़ी सुंदर और भाँति-भाँति के --

रखी हुई दिखाई दे रही है जिनका रंग सफ़ेद है साथ ही दो प्लेट्स में --

उसके पीछे केले भी नजर आ रहे हैं साथ में सेब और संतरे भी हैं।

इस दृश्य में हमे एक पैट्रॉल पम्प दिखाई दे रहा है जिस पर की इंडियन आयल लिखा हुआ है।

जो की किसी बिल्डिंग के बाहर बैठे --

कार को काफ़ी ज़्यादा सुंदर सजाया गया है फूलों के माध्यम से।

उसने नीली कलर की शर्ट पहनी हुई है । साथ ही काफी सुंदर ऑफिस दिखाई दे रहा है ।